और बोहत बड़ा गेट है और बीच में आदमी है घंटी भी है दोठो कुर्सी है साइड में बाहर में बालू रखा हुआ है।

पार्क है बहुत सुंदर और हरा-हरा गाछ है बीच मे पानी है छोटा स पुल है पानी के अंदर मगरमच्छ भी है।

ओर आदमी भी है घूमने के लिए आए है पत्थर का पहाड़ बना जैसा है और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच मे मगर--

एक मंदिर है छोटा सा बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा सा रंग से फूल से सजाया हुआ है राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी का मूर्ति रखा हुआ है।

और हाथी है छोटा उसका नीचे छोटा-छोटा हाथी है | और लगा हुआ है गाछ और हाथी और घर है।

और पानी है बीच मे खंभा है बिजली का और चारों तरफ से पूरा पेड़-पौधा है और बीच मे बहोत बड़ा नदी है।

एक मॉल है दोठो पुतला है दोनों कपड़ा पेहेना हुआ है अंदर मे कपड़ा है।

दोठो लाइट लगा हुआ है अगल बगल मे पेड़ पौधा है सीढ़ी है ग्रिल है लोहा का चार खिड़की है।

सड़क पे एक टेम्पो खड़ा है और दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है वेलकम लिखा हुआ है।